यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर व्हाइट कलर की टंकियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ हरे-भरे पेड़-पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।

पंप हाउस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक तालाब है तालाब के आस-पास एक बाउंड्री बनी हुई है।

यहाँ पर मुझे एक नगर पंचायत छुरी कल्प--

द्वारा निर्मित सुलभ शौचालय एवं स्नानागार दिखाई दे रहा हैं।

के आसपास फ्लावर्स से डेकोरेशनस किया हुआ है।

यहाँ पर एक कार के टायर दिखाई दे रहा है आस-पास हरे पेड़ दिखाई दे रहै हैं।

--साउंड रखा हुआ दिखाई दे रहा है स्टेज के ऊपर ग्रीन नेट बीछी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बड़ी-बड़ी दो चेयर्स लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ पॉल दिखाई दे रहै--